लग रही है जहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है बाहर। इसमें लिखा हुआ है बालाजी हॉस्पिटल ।

एक कार उनके बगल में खड़ी हुई है जो सफेद रंग की है और एक बाइक जैसे भी दिखाई दे रहा है।